जो जगह होती है और यहाँ पर पूरी तरीके से अ है बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ अंधेरा है चारों तरफ और देखने में अच्छा है और यहाँ पर कार भी खड़ी हुई है जो ची --

ज़मीन जो है पुरी पथरीली है और पत्थर की सीमेंट की बनी हुई है। और यह बहुत ही खूबसूरत और अच्छी है।

एक पुल आ रहा है यहाँ लोहे का पुल है और यह देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और हमें ये --

एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ही बड़ा है‌ और यहाँ पर ये पिलर्स हैं और ये जमीन में --

बहोत सुन्दर हैं| यहाँ पर चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है| जहाँ पर हल्का हल्का पानी है जो गंदा पानी है| चारो तरफ घास ही घास है और बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और रेलिंग लगे हैं| किनारे लोहे के --

और यँहा पर एक लगी है। जमीन में यहाँ पूरा अँधेरा मचा हुआ है और ये देखने में बोहोत ही सुन्दर और बोहोत ही प्यारा लग रहा है हमें यहा आना चाहिए और इन देखना चाहिए और सुनना चाहिए परखना चाहिए --